यहाँ पर एक बड़ा सा गौतम बुद्ध जी की मूर्ति दिखाई दे रही है।

और नीचे कोंनकीट की छत बनी हुई है।

यहाँ पर एक सीधी रोड जाती हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक बड़ी-सी मूर्ति दिखाई दे रही है जो की गोल्डन कलर की देखी जा --

इस प्लेन को काले रंग से पेंट किया गया है और सामने एक व रोशनी आती हुई दिखाई दे रही है।

और यहाँ पे वो देखने में बोहोत ही अच्छा लग रहा है।

पीछे एक बोहोत बड़ी-सी खंबी लगी हुई है।

देखने में बोहोत ही सुन्दर व आकर्षक लग रहा है।

पीछे की तरफ कुछ डिब्बे और और टॉर्च रखे हुए देखे जा सकते है और कुछ महिलाएं दिखाई दे रही है।

पीछे की तरफ कुछ सूरज देखा जा रहा है।

हैं और सामने एक लड़का खड़ा हुआ है जो की सेल्फी लेते हुए साफतौर पे देखा जा सकता है।

एक बड़ा-सा पेड़ सामने देखा जा सकता है।

अगल-बगल में और भी बोहोत सारे इस वस्तु दिखाई दे रही है यह पे देखने में बोहोत ही प्यारा दिखाई दे रहा --

मूर्ति है निचे कुछ महिलाये दिखाई दे रहीं हैं जो --

यहाँ पर एक बहुत अच्छी-अच्छी बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है नीचे कुछ स्कूटर खड़े हुए हैं।